यहां पर दो डॉक्टर खड़े हैं।

और ऊपर लाइट जलती दिखाई दे रही है।

सामने कुछ लोग की नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

और एक कुर्सी भी नजर आ रही हैं।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

और बाहर की तरफ कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।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

और लाइट्स भी जलती दिखाई दे रही है।